बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा बिल्डिंग है बहुत ही अच्छा बहुत ही बड़ा है बहुत ही सुन्दर है |

घर बहुत अच्छा है लाइट दिख रहा है | बहुत ही सुन्दर है |

बहुत ही अच्छे बहुत ही सुंदर हैं |

बहुत ही सुन्दर दुकान है बहुत ही अच्छा है | एक फल लगा हुआ सब कुछ --

यहाँ पे सोलह बट्टा --